इस चित्र में एक जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ दिख रहा है।

यहां पर कुछ लाइट्स और चेयर्स रखी हैं।

बिल्डिंग के बाहर इमरजेंसी ओ_पी_डी आई_पी_डी एंट्री प्रवेश लिखा गया हैं।

इस चित्र में एक सुंदर सा सजा हुआ मैरेज हॉल नजर आ रहा है।

जहां पर उसके चारों तरफ बहोत सारे हरे भरे पेड़ लगे हुए दिख रहे है।

सामान की दुकाने नजर आ रही हैं।

जिम में चारों तरफ बहुत सारी एक्सरसाइज करने के लिए मशीनें रखी गई हैं।

बहोत सारे गेंदे के फूल रखे हुए नजर आ रहे हैं।

एक बाइक सवार खड़ा हुआ नज़र आ रहा है।

सामने सीढ़ियां नज़र आ रही है।

जिसके कंधे पर एक काला बैग है।

सामने साइंटिडो नीचे परफ्यूमरी लिखा हुआ है।